हाथ से इनके नसों को ध्यान से देख सकते है ह ये कुछ लड़का ये दौड़ कर रहा होगा इसके कारण प्रॉब्लम कुछ आ गया होगा ।

गाइस आप देख सकते हैं। चारों ह हाथ पैर में जूते पहने हुए ये लड़का इसके पीछे एक वाइट दीवाल भी है।

यह सब छत डार रहें हैं। इनको ऐसा करना चाहिए। छत की प्रक्रिया चल रही है।

इस पर्व मे ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इधर बहुत सारे व्यक्ति जमा हुए हैं और गांव की रौनक भड़ा रहे है एवं मेले --